इस ग्राउंड के आस-पास मकान भी बा इस ग्राउंड के पास बहुत सारे पेड़ भी बा ।

इस सड़क के पास बहोत सारा पेड़ भी लगल बा इस सड़क के पास बहुत सारी हरियाली भी बा इस सड़क के पास जंगल भी बा

इस सड़क के पास गाड़ियां बा ऑटो ऑटो में कुछ लोग भी बा कुछ सड़क पे भी बा ।

ये एक मैदान बा इस मैदान में कुछ गाड़िये खड़ल बा इस मैदान के पास बिल्डिंग बाले बनेल बा ।

ग्राउंड के पास बहुत सारे पेड़ लगल बा इस ग्राउंड में बिजली का खम्बा भी लगल बा इस ग्राउंड में कुछ लोग भी बा।

इस झुंड के पास बहुत सारे पेड़ बा इस पेड़ के उस साइड मैदान बा मैदान के पास बहुत बड़ा पहाड़ भी बा और उसमे बहुत सारे पेड़ भी बा।